और यह औरतों ने अपनी बैठ कर योगा कर रही हैं और सबने अ अलग-अलग तरह के तात लिए हुए हैं । एक औरत ने ग्रीन येलो रेड और पिंक तात पर बैठी --

इस तस्वीर में कुछ लड़के ट्रक मे से बोरिया अ बोरिया ट्रक में रख रहे हैं। एक लड़का अ लकड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है जो व्हाइट कलर की बोरी ट्रक मे रखने लगा है।

और इस इस हॉल में अ ऊपर की तरफ एक ये जो क्लाक बड़ा क्लाक लगा हुआ है और साइड मे एक झन--

यह तस्वीर गणतंत्र द्वार के बाहर की तस्वीर है। यह बिल्डिंग के ऊपर रेड कलर किया हुआ है और साइड पर पीछे ग्रीन कलर भी पोती नजर आ रहै हैं और आसमान मुझे स्काई कलर का नजर आ रहा है।